और सर लोग दिख रहें है और आजू-बाजू में बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहे हैं और एक बिल्डिंग दिख रही हैं।

यह सेपरेट टेबल्स एंड चेयरस् हैं।

च--काम शुरु हैं जे_सी_बी दिख री हैं और कुछ गाड़ियाँ हैं साइकल्स हैं।

ऐ अलमारी जैसा हैं वहाँ पे कुछ रखा हैं और आधी एसी दिख रही हैं।

यहाँ पे कपड़े मम-- धूले जाते हैं ओर--

और फ्रिज मे कुछ सामान रखे हुए है जैसे की आइसक्रीम श्रीखंडा और केक उसके ऊपर केक रखे हुए है।

और कुछ मेहंदी के पैकेट दिख रहें हैं और आईना दिख रहा है।

यह एक सलून दिख रहा है सलून मे दो चेयर्स और एक बैठने के लिए सोफ़ा दिख रहा है।